तथा एक पोस्टर भी चिपकी हुई है।

यह एक कारखाने का दृश्य है जहां पर बहुत सारे लोहे के खंभे लगे हुए हैं ।

इस ढेर पर दो आदमी बैठे हैं तथा एक आदमी लेटा हुआ है।

सारे टेबल सफ सफ़ेद रंग के हैं जबकि एक टेबल भूरा रंग का दिखाई दे रहा है।

इसके बाहर बहोत सारी कुर्सियां दिखाई दे रही हैं तथा इसके अंदर भी बहोत सारे सामान दिखाई दे रहे हैं।

बिल्डिंग को सफेद रंग से पेंट किया गया है तथा बिल्डिंग की चारों ओर लाइट से सजावट की गई--

बिल्डिंग के गेट पर कपड़े का दरवाजा बनाया गया है तथा लाइट भी लगाया गया है।

बिल्डिंग के सामने बड़ा मैदान है जहां पर हरे रंग की कारपेट बिछी हुई है।

कान के बगल में एक घर भी दिखाई दे रहा है जो की हरे रंग का रंग हुआ है।

आदमी के पीछे तीन महिलाएं नदी पार कर रही है तथा महिलाओं के पीछे एक नाव भी लगी हुई है जो कि रुकी हुई है।

के बगल में एस_बी_आई भी लिखा हुआ है।

दरवाजा भूरे तथा काले रंग का है जबकि बेड सफेद रंग का है।

आदमी के हाथ में मोबाइल भी हैं तथा आदमी ने मास्क भी लगा रखा है।

घर का फर्श टाइल्स द्वारा बनाया गया है तथा बगल में एक कुर्सी भी लगी हुई --

यह एक वाटर पार्क का दृस्य है। जहां पर एक आदमी एक महिला तथा एक बच्चा दिखाई दे रहा है ।

और उनके सामने बहोत सारे बिजली के खंभे भी दिखाई दे रहे हैं जिस पर बिजली के तार लगे हुए हैं।

यह एक रबर का मैट है। जहां पर चार बच्चें दौड़ रहे हैं।

जिसमें से तीन बच्चे विशेष प्रकार की ड्रेस पहने हैं जबकि एक बच्चा इनसे अलग ड्रेस पहना हुआ है।

इस रूम के दरवाजे तथा अलमारी भूरे रंग के हैं।

जो कि इनको योगा करवा रही है।

इलसलन पट्टी पीले तथा नीले रंग की है।

टॉयलेट की छत पर एक लाइट भी लगाई गई है।

इस होटल का सीलिंग बहुत अच्छे से सजाया गया है तथा इसके सीलिंग में बहुत से लाइट भी लगे हुए हैं।

होटल को सफेद रंग से पेंट किया गया तथा इसकी सीलिंग को भी सफेद रंग से पेंट किया गया है।

के सामने एक लड़का दिखाई दे रहा है जो की गुलाबी रंग का से सर्ट तथा पीले रंग का पैंट पहना हुआ--

सामने में दो रनिंग मशीन दिखाई दे रहे हैं जो कि काले रंग के हैं।

यह एक प्रिंटिंग की दुकान है जहां पर अलमुनियम के दरवाजे अन्दर से लगाए गए हैं।

इस दुकान में पीले रंग के दो बड़े बड़े बाहर से गेट लगे हुए हैं तथा इसे सफेद रंग से पेंट किया गया है।

यहां पर बहुत सारे टॉनिक भी रखे हुए तथा टैबलेट भी रखे हुए हैं।